और कुछ औरतें खाना बना रही है और कुछ औरतें सब्जी काट रही है और कुछ धो रही है।

एक रेख बनी हुई है जिसमें किताबें और कुछ पासबुक्स रखी गई हैं।

छोटे छोटे पौधे है और ब्लू कलर का बड़ा सा पत्थर है और नीला आसमान है।

और एक टेबल पर हाथी की मूर्ति रखी हुई है।

साइकिल रखी हुई है बहुत सारी और दो गाड़ियां खड़ी है और एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा--

इंडस इंडिया बैंक पर ब्लैक कलर के पत्थर के पगोटीये पेडी की नाल लगी हुई है।

पेड़ भी लगा हुआ है और एक कुर्सी भी लगी हुई है जिसके लोग बैठते हैं।

और लाल कलर की बस है और ब्ल्यू आसमानी कलर की बस है आसमान साफ है।

यहां पर डिलीशियस फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न भी लिखा है और कुछ आइसक्रीम्स भी रखी है।

और एक औरत है जो साड़ी पहने रिक्शा लेने आई है।

देश नोक के रेलवे स्टेशन के --

और बहोत से लट्टू बल्ब जल रहे है कुर्सियों पर बच्चे बैठे हैं एक व्हाइट टी शर्ट मे छोटा बच्चा --

जिम के अंदर का दृश्य है जिमनास्टिक और जिम का समय समान है और --

जो जल रहा है एक आदमी है जिसका चेहरा ब्लर किया हुआ है जिसने पीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ए_सी के आउटडोर रखे हुए हैं उसके ऊपर केल्विनेटर का बोर्ड लगा हुआ है।